ढेर सारे लोग है और बहुत सारे लोग है। आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। और लाइटस वाइट्स भी अच्छे से लगा हुए --